ये देखो यहाँ पर दो बच्चे बैठे हुए हैं।

और एक दूसरे को बार-बार देख रहे है।

ये एक प्लेटफार्म है। जिस पे एक रेलगाड़ी भी खड़ी हुई है।